इस एम्बुलेंस में इमरजेंसी --

यहाँ पे बहोत सारे बच्चे नदी में --

यह रेस्त्रौंत में बहुत सारे लोग खाना खा रहे है। बोहोत सारे टेबल कुर्सी लगा हुआ है।

एक लोटे में जल रखा हुआ है। थाली में दिया जलाया गया है।

इस नदी के बगल में बहोत सारे घर दिखाई दे रहे--